और इसपे हमारे देश का झंडा भी दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का एक सोफा है।

इधर साइड में एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है और एक ब्लू रंग का कूलर भी दिखाई दे रहा--

यहां पर देखिए रेड रंग के छोटे छोटे बॉक्स धरे हुए है और साइड में शीशे में गुड़िया भी रखी हुई है।

मेज पर एक प्रेस भी रखी हुई है।

इस बेंच ने अलग अलग परकार की ड्रेस पेहनी हुई है।

इसमें कुछ ब्लू कलर से लिखा हुआ है।

यहां पर देखिए ये एक ए_टी_एम है एक्सिस बैंक है।

और शीशे पर पोस्टर लगे हुए हैं।

वेलकम टू और देखिए जाली भी दिखाई दे रही है।

यहां देखिए आपको अलग अलग प्रकार की गिटार दिखाई दे रहे--